एक इंसान जो मिट्टी खोद रहा है।

वो इंसान वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे नजर आ रहा है एक घर जिसके आगे बड़े बड़े गांछ लगे हुए हैं।

एक तरफ एक तरफ में एक घर है जिसके आगे एक इलेक्ट्रिक पूल बना हुआ है जिसके ऊपर से वायर जा रहा है।

अ जिस रेस्टोरेंट के बाहर छोटे छोटे दो हट बनाए हैं।

दुकान मे बहोत सारे बिस्किट्स है।

इंसान ने नीला कलर का कपड़ा पहना हुआ है।